दीवार का कलर येलो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अंदर बहुत सारा समान रखा हुआ हैं यहाँ पर गेट में ताला लगा हुआ है।

बैनर्स लगे हुए ये कोई ब्लू कलर के हैं यहाँ पे बहो और बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्वास्तिक भी बना हुआ है यहाँ पे खंभा भी दिखाई दे --

यहाँ पे एक सीढ़ी भी रखी हुई है यहाँ पे कुछ ऑरेंज और पिंक कलर के कपड़े भी रखे हुए हैं।

ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ का बादल पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ की दीवार पर थोड़ा-सा पिंक कलर थोड़ा-सा पर्पल कलर दिखाई दे --